दिए गए चित्र में हमें बहुत ही बाद एक रूम दिखाई दे रहा है और उसे रूम में --

दिए गए चित्र में हमें एक दो घड़ी दिखाई दे रही है और उसे --

दिए गए चित्र में हमे एक बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही हैं और वो --

दे रही है और एक बिल्डिंग --

दिए गए चित्र में कुर्सियां दिखाइए दे रही है और --

दी गई तस्वीर में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा --

कुछ नट और पाने भी नज़र आ रहे हैं और सारे कुछ पाने भी --

दी गई तस्वीर में हमें कुछ पाइपे नजर आ रहे है।

दिए गही तस्वीर में हमें कुछ चीज नजर --

दिखाई दे रही है और व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

दी गई तस्वीर में --

ये एक दुकान दिखाई दे रही है और --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

कई बहोत सारे चीजे भी दिखाई दे रही है और एक जाली भी दिखाई दे रही है।

वहीं पे कुछ सारी चीजें भी दिखाई दे रही हैं।

दिए गए चित्र में हमें बहुत सारे सिरिये दिखाई दे रहे हैं और वहीं पे कुछ --

है और कुछ सारी चीजे भी दिखाई दे रही है।

दी गई तस्वीर में हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है और --